इहा मोर है और यहाँ पस कुटा भी दिख रहा है पत्थर भी दिख रहे है मोर का पंख भी दिख रहा है मोर भी दिख रहा है औ पत्थर भी है।

पूल के नीचे नदी भी है और ट्रेनवा है एहे होता है नद्दी भी है और यहाँ आसमान भी दिख रहा है पता नहीं क्या-क्या दिख रहा है।

नया बन रहा है शीशा लगा है बाथ लगा है भाई --